और उसके स्वास्थ का ख्याल रखा जाता है हमें मस्त शिक्षा के तौर पे हमें --

याम बनारस में सिर्फ महमूरगंज का डाक सेवा का भारतीय डाक की तस्वीर जहाँ पे लोग अपन जहाँ पर लोग अपना पोस्ट करते हैं अपने दूर रिश्तेदारों को पार्सल भेजते हैं।

इस तस्वीर में हमें यह देखने को मिल रहा है की जैसे की एक अस्पताल का एक एैसा हिस्सा है जहाँ पे लोग के कुछ बहुत-बहुत भयंकर बीमारी है।

यह एक ऐसे हॉल का है जहां पर एक लड़की ढेर सारे लोगो को डास की प्रैक्टिस करा रही है या फिर समझ लो योगा करा रही है। दोनों बोहोत ज़रूरी है।

ये किसी अ विश्वविद्यालय या संस्था के बाहर के गार्डन में स्थित योग की तस्वीर है जहाँ पे लोग सुबह-सुबह योगा कर रहे हैं क्योकि योगा तो प्रातलका किया जाता है।

आ हमें अ कोई चीज़ आगे करने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में सही गाइडेंस ज़रूरी होता है।

इसमें स्पोर्ट की भी व्यवस्था की गयी है वेट लिफ्टिंग की गयी है मानो एकदम फिटनेश के बारे में एकदम अच्छा सा ख्याल इसमें हमारी बॉडी का रक्खा गया है।